ये लोग शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे है। इनके हाथ मे शिकार गन है और ये दो आदमी खड़े है।

और गुटों का छिलका अभी वहीं पर गुटों के ऊपर ही है।

और यहां दरिया में भी अ बीच बीच में घास है।

फूलों से डेकोरेट किया गया है और यहां पे दो सोफे रखे गए हैं।

यहां पे कुछ परफ्यूम्स है ऊं ये यहां पर ब्लैक कलर की अलमीरा बनाई गई है।

यहां से ये वुडन बनाया गया है गमले हैं उनमें पौधे हैं।

लाइटें र लाइट जल रही है जोकि रिफ्लेक्ट कर रही है।

और इस दरिया में कुछ पिलर्स भी रखे हुए हैं।

ये एक दुकान है इसमें बहोत सारी मछलियां क्रेट्स में भरी हुई है और कुछ मछलियां नीचे जमीन पर है और सेल्फेस पे कुछ सामान है।

ये एक हॉल है और यहां पे बहोत सारी अं चेयर्स हैं सामने व्हाइट कलर के सोफे हैं।

और यहां कोई इवेंट की तैयारी चल रही है ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

ये शॉप है और यहां अलमीरा में अ कुछ सामान रखा गया है।

ये कोई आ सरकारी दफ्तर नजर आ रहा है। कोई बिल्डिंग है।

इस मैदान में थोड़ी सी घास उगी हुई है और ये मिट्टी है।

ये एक शॉप है और यहां टेबल पे अह बॉटल्स बहुत सारी रखी गई है उनमें समान है।

लोहा लगाया हुआ है और यहां पे अ एक और बिल--

और यहां पे बहोत घने पेड़ नजर आ रहे है।

सूप है ऑयल है शैंपू है नील पेंट है।

ये यहां पे कुछ लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं।

और वहां दूर पहाड़ और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

बहोत सारा सामान रखा हुआ है एक टेबल है उसमें वो ब्लू कलर का है उसपे कुछ और कुछ ट्राई रखी हुई है।

ये एक उम् बाग है और यहां पे बहोत सारे घने पेड़ ग्रीन नजर आ रहे हैं।